यहां पे है एक अ जो चीज रखी हुई है यहां पे म्यूजियम में पुराने पुराने चीज है।

यहां पे जाने के लिए रास्ता है जो यहां पे अलग अलग है जैसे कि यहां पे लोहे--

रोज आने के लिए और यहां पे साइड में कंपाउंड मारा गया है।

ऊपर छोटा सा ये पूमा नीचे पोस्टर लगाया हुआ है।

जो यहां पे हरियाली और यहां पे एक रास्ता है जाने के लिए--

और यहां पे है आसमान। आसमान में बादल है और नीला भी दिख रहा है।

यहां पे एक सीढ़ियां हैं बहोत सारे और नीचे यहां पे है तालाब जो पानी है।

ओ पिंक है बहुत अलग अलग किस्म के हैं जैसे यहां पे सेट में भी है जो अंदर लगाने के लिए भी है।

अलग अलग कलर वाले हैं यहां पे नीला है काला है जो कलर कलर में रखा गया है जो यहां पे काला और लाल में--

वो डांस कर रहे हैं स्टेज पे इच फ्रॉक में यहां पे अलग अलग पोजीशन अलग-अलग फ्रॉक पे यहां पे इनके पास --

और नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछाई हुई है दीवार का कलर यहां पे व्हाइट है।

लड़कियां लड़के यहां पे बैठे हुए हैं और सोफा सेट है यहां पे वाइट कलर का--